इस बिल्डिंग को बनाने के लिए --

इस चित्र में एक बुक स्टॉल है जिसका नाम तेजा बुक स्टॉल है।

कुछ बच्चे यहाँ पे साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कुछ जजेस उन्हें --

बहुत सारी बच्चियां है रंग-बिरंगे पेपर्स लेकर क्राफ्ट कर रही --